यह एक दुकान है उस दुकान में बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है।

बोर्ड के पीछे एक बहुत बड़ा घर है।

घर में आसमानी कलर का रंग किया गया है।

बोरे का रंग लाल है।

नीचे में एक जेरॉक्स मशीन भी रखा हुआ है।

नीचे में बहुत बड़ा टेबल भी है टेबल के साइड में एक बहुत बड़ा शीशा भी लगा हुआ है।

ऊपर में एक कैमरा भी लगा हुआ है उसके साथ में एक टी_वी भी लगा हुआ है उसके नीचे में एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

दुकान के बाहर बहुत सारे सजावट किए गए हैं।

लाइट के साइड में एक पंखा भी लगा हुआ है पंखे के साइड में एक कैमरा भी लगा हुआ है।

साइड में बहुत सारे चप्पल भी खुले हुए हैं।

यह एक होटल है। इस होटल के बाहर एक क बोर्ड अह अह लगा हुआ है।